इस चित्र के अंदर सामने कुछ लोहे के आइटम दिखाई दे रहे है जो ब्लैक कलर के है।

और सामने लिखा हुआ हरियर क्षेत्र सोनपुर मेला दो हजार अठारह।

इस फोटो मे बहोत सारा पानी इक्कठा हो रखा है पानी के अंदर एक बूंद सर्कल के रूप मे जाेमबाड़ा बना हुआ है।

इस तस्वीर के अंदर एक जाली लगी हुई है और चारों ओर दीवार बनी हुई है पत्थरों से बीच में गोल खड्डा है।

इस तस्वीर के अंदर एक रूम है रूम के अंदर बहोत सारी किताबें पड़ी हैं किताबें अलग-अलग कलर की और छोटी-बड़ी किताबें हैं।

एल्युमिनियम के और पीछे बोतलें पड़ी है कुछ छोटी छोटी डिब्बे पड़े हैं यहां पर जाली लगी हुई है।

इस तस्वीर के अंदर सामने सफेद कलर की और केसरिया कलर की मालाएं लटक रही है ये मालाएं फूलों से बनाई हुई है।